छह बच्चे निकल कर प्रेयर करवा रहे हैं और वहां पे बहोत सारे टीचर लाइन में खड़े हैं।

भी बनी हुई है और एक नल से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

गर्ल्स अपना हेयरकट के लिए आई हुई है।

मशीने रखी हुई है और एक लड़का--

तीन टैक्टर खड़े हुए हैं और छोटे बड़े पहिये उसमे लगे हुए उसके बगल में एक बाल्टी भी रखा हुआ है और छोटी सी --

एक बोर्ड लिखा हुआ लगा हुआ हैं जिस पर ट्री और कुछ।

बहुत सारी संख्या में आदमी इकट्ठे हुए अपने अपने रेल का वेट कर रहे हैं एक रेल --